इस इमेज में हमे एक न् बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गयी है जोकि एक अ टिन से बनी हुई है। टी शट से --

इस इमेज में हमे यहाँ पे एक घर दिखाया गया है इस घर के बाहर वाइट कलर है और यहाँ पे कुछ फैन वगेरा लगे हए हैं ये वाइट कलर के फैन हैं इसके पीछे एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है।

इनको एक मोरपंख पहनाया गया है जो इसमें गोल्डन कलर का है।

और यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे भी दिखाए गये हैं छोटे-छोटे पौधे हैं यहाँ पे इन पत्थरों के बीच लगे हुए दिखाए गये हैं और स्काई भी यहाँ पे दिखाया गया है।

इस इमेज में हमें एक जंगल दिखाया गया है। जंगल में यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ हैं। नीचे यहाँ पे घास लगी हुई है जिसमें छोटे-छोटे पौधे भी हैं और हिरन दिखाए गये हैं। अ ये यहाँ पे कुछ घास वगैरा खा रहे हैं।